बड़ा सा रोड है बीच में पार्किंग लगा हुआ है।

अगल-बगल पेड़-पौधे हैं एक आदमी दिख रहा है।

एक सामने गेट दिख रहा है गेट के ऊपर --

ढेर सारे लड़के और लड़कियां हैं नीचे कुछ सामान रखा हुआ है।

जो हरे-भरे घांसों से भरे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक घर दीख रहा हैं।

जिस घर में ढेर सारे टेबल कुर्सी हैं कुछ बेड़े भी हैं तीन चार आदमियां हैं।

लोहा है जो हरा कलर का पेंट किया हुआ है।

इस तस्वीर में हरे भरे मैदान दिख रहे हैं।

बीच में एक गोल है जिसमें एक लाइट बर रहा है।

एक बच्चा है जिसमें वो बैठा हुआ है।

इस तस्वीर में एक घर है।

घर के अगल-बगल एक पेट्रोल पंप है।

नीचे जमीन दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है एक औरत है जो बैठे हुए हैं।

जिस घर में एक बौले लगे हुए हैं।

तस्वीर में एक घर दिख रहा है जिस घर में पेड़-पौधे छोटे-छोटे गमले में लगे हैं।

बगल में एक घर है घर पर कपड़ा पसारा हुआ है।

फैंसी सारी दुकान का नाम है।

और नीचे कुछ जाली है।

तस्वीर में घर दिख रहा है जिसमें तीन-चार आदमी हैं।

अगल-बगल पूरे सामान सरी आए हैं।

कुर्सी पर आदमी कुछ बैठे हुए हैं सामने कुछ लिखा हुआ है।

गाड़ी पर नंबर ए सी का इक्कीस लिखा हुआ है।

गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है पीछे दीवाल है।

बगल में एक पौधा है।

पौधे का कलर ग्रीन है नीचे छोटे-छोटे गमले हैं।

दो आदमी बैठे हुए हैं कुछ सामानें दिख रही हैं।

अगल-बगल गाड़ी है बीच में एक रोड है।

घर को पूरा तरीका से सजाया गया है।

अगल-बगल बुलेट गाड़ियां लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है जो वाइट कलर का है।

एक दो आदमी गाड़ी पर बैठे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक घर है।

घर के नीचे दुकान है।

अगल-बगल फूलपति हैं सामने एक सोफा है।

इस तस्वीर में एक घर है घर के नीचे दो-तीन गाड़ियां लगी हुई हैं।

आसमान का कलर वाइट है अगल-बगल घर है।

ढेर सारी सामानें हैं सामने एक रोड है।

सीढ़ी दिख रही है अगल-बगल घर हैं।

सामने एक खिड़की है खिड़की जो खुला हुआ है।

सामने एक तस्वीर है इस तस्वीर पर एक रोड दिख रहा है।

इस तस्वीर में सामने एक रोड है।

अगल-बगल पेड़ पौधे हैं ऊपर आकाश है।

बहुत बड़ा बिल्डिंग है अगल-बगल घर है.

अगल-बगल लाइटें हैं ऊपर पंखे हैं।

और एक घड़ी है तीन-चार हैं जो ऊपर बढ़ रहे हैं.

एक पाइप है जो वाइट कलर का है।

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है जिस घर में तीन-चार कुर्सियां हैं।

सामने एक तस्वीर है इस तस्वीर में एक दुकान है।

दुकान में अगल-बगल ढेर सारे आदमी हैं।

आंगे एक पुतला खड़ा है जिसको ड्रेस पहनाया हुआ है रेड कलर का।

सामने एक रोड है अगल-बगल घर है।

इस तस्वीर में सामने एक घर देख रहा है।

जिस घर के अगल-बगल दो-तीन लड़के हैं।

सामने एक बाल्टी है इसका कलर ब्लू है।

बगल में एक एसबीआई के एटीएम है।

जिस घर में ढेर सारी लाइटें --

अगल-बगल पेड़-पौधे हैं।

घर है नीचे जमीन है।

ऊपर आसमान है सामने एक बाइक है।

एक है इस पर बोतल धारा हुआ है दो बेड हैं।

अगल-बगल जमीन है सामने एक आदमी है जो बैठे हुए हैं।

इस तस्वीर में पानी दिख रहा है।

ऊपर आसमान है एक सूरज भगवान दिख रहे हैं।

अगल-बगल पेड़-पौधे देख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक घर है जिस घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं कुछ बच्चियाँ भी हैं।

इस तस्वीर में एक घर है जिस घर में दो-तीन बेंच हैं ।

जो बेंच पर सामान रखे हुए हैं एक दो लड़कियां हैं।